और बहुत बढ़िया यहाँ पढ़ाई लिखाई होता है बच्चों को डॉक्टर बनाया जाता है यहाँ और ये लगता है यहाँ सभी लोग यहाँ जो डॉक्टर यहाँ से निकलता है वो काफी अच्छा होता है।

एक पार्क है पार्क मे चिड़िया घर है और इस चिड़िया घर मे हंस हैं हंस पानी में तैर रहे हैं और काफी बढ़िया हंस हैं ये सब ।

यानि किसकी फस लाइट भी है और नहर का पानी इसमे आ गया है जो की बहुत खतरनाक हो गया है यहाँ का रहना खाना सब और गाय जान माल सब को निहर नहर भी।

जो की बहुत ही कच्चा बात है जिसे करने से लोगों का बहुत से समस्याएं खत्म हो जाएगी।

और रेस्टोरेंट के बहुत सॉफिस्टिकेटेड लोग यहाँ आते हैं और ये खाते हैं।

और पार्क में कुछ सूखे हुए पेड़ भी है बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है इनलोग का गाँव में बिल्कुल हरियाली है बहुत अच्छा से तरीके से बनाया गया है और बहुत फर्स्ट क्लास का ये है ।

और पत्थर लगा के ये जो पहाड़ बहुत अच्छा लग रहा है देखने मे बहुत सुंदर लग रहा है और बहुत प्यारा बना हुआ है।

एक आदमी का फोटो है जो बहुत बढ़िया से बना हुआ है और ये पार्क में है और इसको बहुत ध्यान से देखने में लगेगा की किसी का फोटो है बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है पार्क में ।

कुछ चीज का बर्थडे मनाया जा रहा है किसी का बहुत बढियाँ तरह का इस रेस्टॉरेंट को सजाया गया है। देखने मे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ आते है और रेस्टॉरेंट का मजा लेते है। काफी बढियाँ है ये रेस्टॉरेंट ।